पुल बना हुआ है जिस पर यात्री सफर कर रहा है और गाड़ी वगैरह जा रहा है।

देखिए वहाँ पर बैगन है टमाटर है गाजर है आलू है निम्बू है धनिया है।

यही सब है और तीन-चार रिक्शा है बहुत सारा मोटर --

खोआ बटर लस्सी पेडा रसगुल्ला गुलाब जामुन दुध पाउडर क्रीम शादी-विवाह एवं --